यहाँ पे दोनों तरफ में जो की अलमारियां रखी हुईं हैं यहाँ पे सारे अलमारी में जो की किताबे रखी हुई हैं --

ये लगता है किसी ब बड़े आदमी का घर है यहाँ पे जो की बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं लगता है ये लोग--

जो लाइब्रेरी रखने की जगह होती है उसके बारे में दिखाया गया था ला --

ऊपर से छत को ढलाई किया गया है इसके चारों और एक बॉउंड्री भी लगाई गई है बॉउंड्री के--

सामने बहोत सारे घाँस नज़र आ रहे हैं जैसा हरा-हरा मैदान लग रहा है।

और ये अंकल भी बहुत ही खतरनाक पोज दे चुके हैं।

दो तीन राउंड इन लोगो का काम करना पड़ेगा तभी इनका जो है।